जिसके ऊपर जाने के लिए बहोत सारे चट्टानें दिख रही है।

और मंदिर चड़ने वाले रास्ते पे बहोत सारे घास जमे हुए है।

खटिये पे एक तकिया रखा हुआ है।

और उसके बगल में एक बड़ा-सा गड्ढा है।

और दूर में दो तला मकान है।

उसकी खिड़की से एक छोटा सा रेड कलर का रोज दिख रहा है।

उसके नीचे एक तालाब है।